खाने पीने का बहोत सा सामान मिलता है।

बहोत ही सुंदर योग चल रहा है।

यहां से आसमान का रंग बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत बड़ी नट की --

ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर का--

यहां पर कोई इवेंट शो चल रहा है।

ये एक पुराने घर की फोटो है यहां पर नया घर बन रहा है।

टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही बैठे हैं।

ये एक डॉक्टर की क्लिनिक की फोटो है।

ऑफिस का फोटो है यहां पर गाड़ियां को सर्विस किया जाता है।

घर के ऊपर एक छत बनी हुई है जो कि ईंटों की बनी है।

यह एक आग बुझाने का यंत्र है।

यहां पर बहुत लोग घूमने आते हैं।